गार्डन जैसा दिख रहा है जहां पर भगवान जी का स्टेचू है।

चारों तरफ पेड़ पौधे ग्रास प्लांट्स हैं।

रेस्टोरेंट टाइप है एक सॉरी एक सैलून है जहां पर--

इस पिक्चर में मुझे एक पार्लर दिख रहा है। जहां पर बहोत सारी चेयर्स हैं।

माथा टेकते नजर आ रहे है अलग अलग--

अनुराग बच्चनस द्रोणाचार्य आई_आई_एस की कोचिंग सेंटर है।